यह एक बहोत बड़ी फास्ट फूड की दुकान है इसमें दीवाल पर एक बैनर लगा हुआ है।

इसके अंदर बहुत सारे दीवार पर कांच के शीशे लगे हुए है।

गोदरेज अलमारी रखी हुई है कांच के शीशे लगे हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है इसके बाहर चार पिलर दिखाई दे रहे हैं।

इसमें हरा भरा घास लगा हुआ है नीचे रेतीली मिट्टी दिखाई दे रही है।

इसके नीचे गत्ता लगा हुआ है दीवाल पर एक पे पोस्टर लगा हुआ है।

बहुत सारी बाईकें एक्टिवा हरा भरा घास लग हुआ है।